रेड कल र की कुर्सी पर बैठा हुआ है उसने अपने हाथ पर मोबाइल फोन पकड़ कर रखा है|

एक आदमी ने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ है और सामने एक छोटा सा पोस्ट भी लगा हुआ है|

यहां पर ए-टी-एम है इस ए-टी-एम के अंदर एटीएम मशीन भी है|

उनके पीछे भारतीय स्टेट बैंक का एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है ।